और कुर्सी एक पास में एक लकड़ी दिखाई दे रही है जो की--

ये एक बिजली घर के दो खंबे दिखाई दे रहे हैं आसपास के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े खंबे दिखाई दे रहे हैं सामने एक बहुत बड़ा --